और दिखने में बहुत खुबसूरत लग रहा है कैफ़े में ऐ.सी. है यहाँ पे अलग अलग दिख रहे जैसे कॉफ़ी सैंडविच बर्गर फ्रेंचफ्राइज अलग अलग टाइप के डिश मिलते है।